पुलिस भी खड़ा है बहुत सुंदर जगह है पूरा-पूरा व्यवस्था है यहाँ।

पेड़ है एक आदमी खड़ा है इधर पहाड़ है।

लेकिन इसमें परती नहीं रहने के बाद कुछ मलीन हो जा रहा है इसलिए थोड़ा अच्छा --

ये आंगनबाड़ी है यहाँ लड़कियां सब पढ़ रहा है यहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं।